वह अपनी फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहा है।

जमीन पर हमें बहोत घास भी उगी हुई नजर आ रही है।

ज्वैलरी सोफी पड़ी हुई है।

हमें कोई भी डॉक्टर नर्सिस या पेशेंटस नजर नहीं आ रहे।

इस दृश्य में हमें एक पार्क नजर आ रहा है।

उसके ऊपर एक आदमी भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

पूरा लाइट से सजा हुआ है।

इस दृश्य में हमें एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके बाहर एक स्टॉल लगी हुई है।

बहोत छोटी सी बिल्डिंग पुरी लाइट्स से सजी हुई है।

जिसपे एक आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

सड़क के पास हमें पार्क भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

यह दृश्य हमें किसी फंक्शन का दिखाया जा रहा है।

हमें बहोत सारी अलग अलग रंगों की मलाये ऊपर टंगी हुई नजर आ रही है।

आसपास हमें कुछ बिल्डिंग्स जो शायद घर की हो सकते है बनी हुई दिखाई दे रही है।

जो कि चेयर्स पर बैठी हुई है।